मं और बोतल टिफिन इत्यादि समान नज़र आ रहा है।

यहाँ पर मैन रोड पर फल और फ्रूट के ठेले दिखाई दे रहे है जिसमें सेव फल --

यहाँ पर मुझे यहाँ एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में फिरोजी कलर की रैलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।